बाहर कि ओर देख रहा है।

इस चित्र में हम देख पा रहे है कि एक सफ़ेद रंग की दिवार पर क्रॉस बना हुआ है जिस पर जीसस --

इस चित्र में हम देख पा रहे है कि अ--

इस चित्र में हम देख पा रहे हैं कि एक टेंट लगा हुआ है।

बैठकर और चार लोग उनके पीछे खड़े हैं और एक आदमी पिआनो बजाने वाले के सामने खड़ा हुआ है और --

पंचिंग बनी हुई है जिसके ईंटों की और एक ट्रक पड़ा हुआ है और एक --

और जो आदमी बैठा हुआ है। उसके हाथ में फोन है वो अपनी तस्वीर खीच रहा है सामने वाले आईने से --

छोटे बच्चे खेल रहे है।

और उसके दरवाज़े लगे हुए है तीन और इसके बाज़ू में एक और बिल्डिंग रखी हुई है और उसके सामने एक झाड़ और एक--

सफेद और काले रंग कि और एक बैनर लगा हुआ है जिस पर केरोवित लिखा गया है और उसके सामने एक नीले रंग की वेगनार पड़ी हुई है।

इस चित्र में हम देख पा रहे है कि यह एक बड़ा सा पुरानी-सी इमारत है जो --

इस चित्र में हम देख पा रहे है कि यह एक दुकान के अंदर लिया गया है जिस पर बच्चो के कपड़े लटक रहे है टी-शर्ट लटक रही है पजामे लटक रहे है।

यहाँ टी-शर्ट और पजामें दोनों साथ में भी लटक रहे हैं।